और बहुत ही खूबसूरत वाटर पार्क है इसमें एक स्लाइड है सलाइड के ऊपर से जो है पानी नीचे की तरफ गिराया जाता है।

ये एक बस स्टैंड की तस्वीर है और इस बस स्टैंड पर तीन बसें खड़ी हुई हैं जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की है और जिसमें रेड और वाइट कलर की बसें हैं।

देख रहे हैं ये एक पार्क की तस्वीर है और रात का समय है पार्क में काफी खूबसूरत गमले हैं।

वगैरह मिलता है दूध से बने सभी पदार्थ यहाँ पे मिलते हैं।

जो हम ये एक क्रॉकरी की दुकान है जिसमें बहुत सारे बर्तन और डिजिटल कुकर बिक रहे हैं और इसमें जो है छोटे-छोटे लाइन लगे हुए हैं।

चर्च का सिंबल बना हुआ है। इसमे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है बैलून लगे हुए है। पीले और लाल कलर के और जो श्रद्धालु है वो चेयर पे बैठे है।

लोवर ब्लैक है और इसमें तीन स्ट्रेट लाइटें जल रही है जो कि रात को दिन में तब्दील कर देती हैं इसमें रात में क्रिकेट खेलने में आसानी हो जाती है।

ये एक मेडिकल की तस्वीर है और इसमें जो है --

डॉक्टर की टीम खड़ी हुई है जो विक्टोरी का चिन्ह दिखा रही है इससे लगता है कि इनके द्वारा किया गया ऑपरेशन सक्सेस है।

देख रहे हैं ये एक बैंक या फिर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जिसमें एक पेटिंग एरिया है जहाँ पे लोग बैठे हैं।

जिसमे जो है कैम्प लगा हुआ है और इसमे इस में तीन --

ये एक रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट का बाहर का लॉन है।

इसमें एक बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है और कुछ व्यक्ति कुर्सी पर बैठे है।